और इनसे प्रेरणा और स्रोत और यहाँ पर माल्यार्पण करने का --

और यह बहुत ही पुराना होटल दिख रहा है जो की भूकंप --

क्योंकि जान से निजात दिलाती है क्योंकि यहाँ से मैन रोड निकल --

यहां के लोग बहुत ही गंभीर समस्या का समाधान सामना कर रहे है जो की शायद बचाव --

जो की वो है नहीं दरअसल लेकिन ये हो सकता है की एयरपोर्ट भी हो सकता है।

हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर --

दिस इज लोकेटेड --

साफ़ सुथरा अच्छा ध्यान रखा गया हैऔर बाकी सब फैसिलिटी दिया है इसमें।

और का भी एक लिखा हुआ है सामने सॉफ्टवेयर से लिखा होगा फिर ये |

और फिर खरीदारी कर के जाते हैं।

यह एक एजेंसी का तस्वीर है जहां पे --

जहाँ पे बच्चे और यहाँ के लोग आजादी के शुभ अवसर पे ये इस मंदिर को भी --

सेनीटाईजेसन कर रहे है किसी --

यह वी टु मार्केट है।

कैफे कॉफी सॉरी कैफे हैं यहाँ पे।